और नीचे मैन गेट लगा हुआ है ब्लैक कलर का | नीचे वाइट पूता हुआ है पुरे में और अअअ जो ब्लैक है बाउंड्री बनी हुई है यहाँ पे --

पेड़ लगा हुआ है हुआ है और बस से हरा रंग--

जो किसी को बनाये होते है झोपडी बानी हुई है एक ऑरेंज रंग का बोर्ड लगा हुआ है निचे एक मिनट उम्म बहुत सी छोटी-छोटी बच्ची बैठी हुई है।

एक हॉल बना हुआ है उसमें बहुत से बच्चे छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए है ड्रॉइंग कर रहा है पेंटिंग कर रहा है दीवाल लगी है वाइट कलर की रेड खम्भे लगे हुए है।

बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं बहुत सी पेंटिंग रखी हुए हैं जो बैठे हुए हैं पेंटिंग कर रहे हैं पेंटिंग कर रहे हैं।

बना रहे हैं और तीन- चार दो-तीन मैडम एक कर खड़े हुए हैं गाड़ी लगी हुई है धूप आ रही वहां से।

एक गलता बनी हुई होल की बस बार-बार पता ऊपर रखा हुआ है बहुत सी ब्रांच रखी हुई है ब्रांच में बहुत लड़की लड़कियां बैठे हुए हैं|

कुछ ड्राइंग बन रही है एक मैडम दिख रही है। खड़ी-खड़ी बात कर देने वाले--